पेड़ लोग भी बहुत ज्यादा है छोटा छोटा घास लोग भी है।

घर में लाइट लोग जला के भी है थोड़े से।

आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और इतना लोग वो जो खड़ा होके है लोहा लोग दिखाई दे रहा है।

मिट्टी येलो दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में गड़ी दिखाई दे रहा है गड़ी की दुकान है।

अच्छे लग रहा है में पोस्ट दिखाई दे रहा है।

बुक्स लोग बहुत ज्यादा रखें हैं।

चारपाई पे दो लोग दिखाई दे रहा है और ।

फिटर्न भी है नीचे भी टीना लोग घेर रख के फिर रोड लोग भी दिखाई दे रहा है।

और ये फोटो में रूम दिखाई दे रहा है।

थोड़ा बड़ा के हैं फिर गाड़ी दिखाई दे रहा है।

और इस फोटो में घर दिखाई दे रहा है थो जिनमें चलाके है।

फीचर में बैक लुक भी है।

हमको ये फोटो में घर दिखाई दे रहा है।

हमको यहां में एक काठ लोग दिखाई दे रहा है जो घर बनाये हुए वाला है घर बनाने के लिए।

वाला और यहां में लोहा लोग भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में आदमी लोग दिखाई दे रहा है।

थोड़ी देर में लोहा लोग दिखाई दे रहा है।